यह एक लोहे की दुकान है जहाँ लोहे का सामान तैयार किया जाता है।

यह हॉस्पिटल का स्टोर रूम है। यहां पर हॉस्पिटल का सामान रखा गया हैं। यहां बड़े-बड़े ऑक्सीजन सिलिन्डर रखे गए हैं।

ये एक विद्यालय के कक्षा का चित्र है। यहां पर सभी विद्यार्थी अपनी पढाई में बयस्त दिख रहे हैं। ये सभी विद्यार्थी अपने किताब पर कोई चित्र बनाते हुए नज़र आ रहे हैं।

चों के पास कलर पेपर पेन्सिल फेविकोल कलर्स सभी सामान दिए गए हैं।